काफी सारे लोग बैठकर यहां पे वर्क कर रहे हैं। सफेद कलर की यह इमारत है जिस टेबल चेयर पर ये लोग बैठ कर ये लोग काम कर रहे हैं।

इसकी अलमारियां अथवा गेट कांच से बने हैं।

इसके बाहर बड़ा सारा ग्राउंड है जिसपे बास्केट बॉल की प्रैक्टिस हेतु ग्राउंड बनाया गया है।

ये फर्नीचर लकड़ी का है इसके ऊपर हरे कलर का वेलवेट लगा है ये दुकान सफेद दिख रही है।

क्योंकि शायद पार्टिसिपेट करे हुए हैं पीछे गुलाबी कलर की सबसे बिल्डिंग भी दिखाई दे रही--

इस चित्र में बड़ा सारा खेत है जिसमें--

जो अपने आप को दिखाने यहां पे आए हुए हैं नीचे टेबल पर औरतें एवं--

महिलाएं यहां पर मास्क लगाई हुई नजर आ रहीं हैं।

ये चित्र एक रेस्टोरेंट का है जहां पर बड़ा सारा इंटीरियर लकड़ी का करा गया है।